वही लोग दूध से नी हुई चीज खरीदने आए हैं जैसे विशाखा डेरी योगर्ट लस्सी है क्रीम और मिल्क शेक --

स्टेट बैंक एटीम पर एक लम्बी सी लोगो की लाइन लगी हुई है लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए लोग आए हुए है ।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति व्हाइट कलर की शर्ट लगा कर चाय पी रहा हैं।

इस वाटरपार्क की तस्वीर में एक बच्चा अपने पिता के साथ खेल रहा है।